पब्लिक पैलेस है जहाँ पे एक अच्छा सा बिल्डिंग है इसमें लाइटिंग का सुबिधा अच्छा है | एक एलसीडी का स्क्रीन लगा हुआ है|

बगल में कुछ बच्चियां देख रही है इधर उधर एक लड़का मास्क लगा कर बैठा हुआ है।

किड्स वियर किराना बाजार है।

सुविधा है यहाँ पे जब --